कुर्सियों का रंग नीला है।

हमें एक मैदान दिख रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक मैदान दिख रहा है।

इमारत पे बाटा और ओयो लिखा हुआ दिख रहा है।

यह एक बहुत ही सुंदर सड़क है।

बच्चे ने हारनेस लगाया हुआ है।

और वो झूला झूल रहा है।

आसमान बहोत ही अच्छा लग रहा है आसमान का रंग नीला है।

एक तालाब दिख रहा है।

उन लोगों ने साड़ी पहनी हुई है।

इस तस्वीर में हमें एक इमारत दिख रही है।

यह इमारत युको बैंक का है।

इस तस्वीर में हमें एक गार्डन दिख रहा है।